एक ऑफिसियल बिल्डिंग जैसा लग रहा है जो डेकोरेटेड है।

गेट के पीछे एक स्विमिंग पूल और आसपास ग्रीनरी और बिल्डिंग नजर आ रहे हैं।

साइड में एक ट्रक खरा है।

सीलिंग पर वाइट लाइट लगी हुयी है दीवार पर फोकस करी गई है।

नदी एक तरफ घास और पेड़ है और उसके साथ एक चलने का फुटपाथ है।

ये एक पार्क हो सकता है।

पिक्चर मे एक मॉडर्न डिजाइन का रेलवे स्टेशन दिख रहा है जिस पे जागी रोड लिखा हुआ है।

अलग अलग रंगों के कपड़े साड़ी और ड्रेस मटेरियल लटके हुए है।

एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम दिख रहा है जिसमें इसका नाम संगत इलेक्ट्रॉनिक है।

टेबल पर एक कैलकुलेटर पेन कुछ पेपर्स रखे हैं।

फोटो में एक मॉडर्न और कोंज़ी इंटीरियर डिज़ाइन है जिसमें वुडन फर्नीचर और कम्फर्टबल सीट अरेंजमेंट दिखाई दे रही है।

एक ग्राउंड क्लास टेबल है और चेयर काउंसलिंग दर ब्लू कलर का है।

पिक्चर में एक तालाब दिख रहा है जो शांत और नेचुरल एरिया है।

आसमान मेें हल्का बादल छाया हुआ है ।

तस्वीर में एक सफेद गाड़ी है जो शादी का इवेंट के लिए फूलों से डेकोरेट की गई है।

और दरवाजे पर रंगभरी फूल लगा है।

एक बेड साइट टेबल भी है जिसमें पानी का बोतल रखा है।

पिक्चर में अलग अलग तरीका का प्लेन पॉट दिख रहा है जो स्लीप पर अच्छे से अरेंज किए गए हैं।

एक मॉडर्न वेल मेंटेन बिल्डिंग दिख रहा है जो शायद किसी स्कूल कॉलेज या ऑफिस का हिस्सा हो सकता है।

बैकग्राउंड में ब्लू स्काई है।

झूलने के आसपास मिट्टी और पेड़ पौधे का ओपन एरिया दिख रहा है।

इसका डिजाइन आर्क शेप है और बिल्डिंग के बाहर सफाई और अच्छा मेंटेनेंस दिख रहा है।

पीछे के तरफ ग्रीनरी और थोड़ा क्लाउड्स स्काई नजर आ रहा है।

यहां कलरफुल फ्लोरिंग है जो अलग अलग रंग के स्क्वायर टाइल्स के बने हुये हैं।

साइड में कुछ लोग चल रहे हैं।

फ्लोर गोल्ड लोन का ऑफिस है।

रास्ते पर मोटरसाइकिल खड़े हैं।

मंदिर के सामने नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है।